इस फोटो मे देख पा रहे है की यहाँ पर टेन्ट वगेरा लगा है कुछ फंक्शन चल रहा है यहाँ पर बहुत सारे जेन्ट्स है लेडीज दिखाई दे रही है और बच्चे दिखाई दे रही है।

कुछ कैरेट मे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक तौलने का तराजु भी दिखाई दे रहा है एक जेन्ट्स बैठा दिखाई दे रहा है कुछ जेन्ट्स खड़े दिखाई दे रहे है जो देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है।

इस फोटो मे हम देखा सकते है कि यहाँ पर एक सदर हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है आस पास पेड़ पौधे है और एक कार भी खडी दिखाई दे रही है।

कुर्सी रखी है एक जेन्ट्स पीछे खड़ा है और वहां पर टेन्ट भी लगा दिखाई दे रहा है इसको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है की यहाँ शामकी समय मे बहुत सारी महिलाये टिकेट लेने के लिए और जेन्ट्स भी टिकेट लेने के लिए खडे दिखाइ दे रही है।

यहाँ पर ऑफिस जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे पंखे भी और कांच की गैलरीस बनी दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे देख पा रहे है की यहा दोपहर का समय है यहाँ पर एक इट इटोका बिल्डिंग बना हुआ दिखाई दे रहा है एक लोहे का बहुत बडा क्यारेट बना दिखाई दे रहा है।